फिंगर पॉइंट करके कुछ दिखाने मांग रहे हैं वो व्यक्ति के हाथ में एक पेपर भी है एक व्यक्ति ने लाल कलर की --

शर्ट पहने हुई है लाल कलर कि कैप पहनी हुई है पीछे की तरफ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है जो बिल्डिंग--

और एक रास्ते में यह रास्ते में एक लड़का जो साइकिल रु चलाते हुए नजर आ रहा है लाल गंजी पहन के--

सब घूमने की तरफ सब घूम रहे हैं यहां पर पीले कलर की पेंडल की तरफ बनी हुई है।

स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ऐसा बैठ कर देख रहे हैं यहां पर बहोत नो--

भीतर की तरफ आ रही है ये एक वुडेन शॉप है.

वाइल्ड बैंकिंग प्रीपेड गिफ्ट्स कार्ड्स इमीडियेट पेमेंट्स आए_म_पी_एस सभी --

रिपोर्ट्स एक्स_रे एम_आर_आई रिपोर्ट देखने के लिए सब मशीन इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक टेबल के ऊपर रखा है वही सब मशीन--

जैसे की मैं देख रही हूँ ये एक चर्च हैं गिरिजा घर जिसे कहाँ जाता हैं यहाँ --

और ये फ्लोर में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं बेंच के पास ही।

पास में जो महिलाएं बैठी है साड़ी पहन के पिंक कलर की वो उन लोग की टीचर नजर आ रही है।

एहापार कुछ गार्डन की तारा जो स्क्वायर डिजाइन बानी हुई है बोहोत खूबसूरत से हम लोग बुसिस को

सेकंड फ्लोर में जो है स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे जो ज्यादतर लड़के हैं।

पिंक-पिंक लाइनिंग बनी हुई है इस माट में और सर्किल रिंगस बने हुए हैं कलरफुल जैसे कि ये रेड है ऐलो है ब्लू है इन्‍होंने --

यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है वाटर स्प्रे एक चश्मा भी रखा हुआ है पीछे की तरफ बहुत सारे --

दो सोफा लगा हुए है एक टूल नजर आ रहा है एक टेबल नजर आ रही है बोहोत सारे एहपर फर्नीचरस के सामान--

एस_बी_आई है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है नीचे की तरफ तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति ने पीछे की तरफ एक--

नजर आ रही हैं पाट की हेलमेट नजर आ रही हैं ये बिल्डिंग ग्रीन कलर का --

व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का बलून्स लगा हुआ हैं यहां पर बाहर की तरफ एक --

वो दरवाजा खोल रहा है कांच का दरवाजा है यहां पर।

यहाँ एक ब बिल्डिंग बनी है ये व्हाइट कलर की यलो कलर की बैनेरस लगे हुए हैं क्लासेज की यहाँ पर एक ताले बी मारी है एक--

जैसा कि मैं देख रही हूं ये कपड़ा का शोरूम है यहां बहोत सारा रंग-बिरंगे कपड़े लगे हुए हैं महिलाओं के जैसे कि लेहंगा है गाउन है सूट पीस है साड़ी है।

अंदर की तरफ बहुत कपड़े नजर आ रहे हैं पैकेट्स में ये दुकान बहुत बड़ा दुकान नजर आ रहा है।

और इस केबिन में एक ग्रीन चेयर हैं जो ग्रीन कलर का टॉवल से ढका हुआ हैं।

कंप्यूटर रखा हुआ है। प्रिंटर रखा हुआ है और--

एक नेम प्लेट रखा हुआ है जहां पर लिखा है धीरज कुमार सिन्हा।

फ्लावर वास हैं एक मूर्ति रखी हुई हैं व्हाइट टेबल हैं व्हाइट टेबल के ऊपर कुछ सामान --

जैसा की मैं देख रही हु ई एक रोड है और इस रोड मैं बोहोत सारे छोटे छोटे चोल बने हुए हैं दुकान नजर आ रही है एक--

और यहाँ पर एक झंडे रंग में वो पिल्लर्स बने हुए हैं ऑरेंज --

व्हाइट और ग्रीन कलर में पीछे की तरफ एक बाइक लगी हुई है एक महिला चल के आ रही है एक पुरुष जा रहा है एक और बाइक लगी है कुछ पुरुष खड़े हैं ड --

टेबलेट्स रखी हुई है बहुत सारी अन्य प्रकार की दवाईयां रखी हुई हैं जैसे की मेडिकल शॉप में होता है मेडिकल यूसेज के लिए होता है वो सब दवाइयाँ इफ --

ये पुरुष फोन इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है ब्लू का टी शर्ट जींस पहन के बैठे हुए हैं।